इस फ़ोटो में सफ़ेद कलर का दरवाजा दिखाई दे रहा है उसी दरवाजे के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो के अंदर एक बड़ा सा फ्रिज दिखाई दे रहा हैजहाँ पर फ्रिज के अंदर कुछ कोल्डड्रिंक्स रखी हुई हैं। और सामने ही टेबल के ऊपर क्यू_आर स्कैनर लगा दिखाई दे रहा है।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

उसे ढेर के ऊपर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं एवं एक व्यक्ति लेटा हुआ है।